जों आमने सामने मंदिर बने हुई है और बहुत सारे लोग हैं। बड़ा सा घर बना हुआ है।

यहाँ पास एक अंकल भी है जो कि झाड़ू लगा रहे हैं। रोड बनी हुई है और ये घर बना हुआ है। यह घर में खिड़की लगी हुई है। गेट लगे हुए हैं और सीढ़ी सीढ़ी में चप्पल उतारे --

यहाँ पास रोड बनी हुई है। बड़ी सी मंदिर बनी हुई है। जहाँ की बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पास बैनर लगे हुए हैं लाइट लगी हुई है और इस मंदिर का कलर पीला है।

यहाँ पास मेरे सामने चनियों से सजाया गया। जहां बड़ा सा गेट हुआ है और अंकल जी है आंटी है जोकि फोटो खिचवा रहे और इसके बगल में मूरत एक बनी हुई है।